यह इमेज में हमे एक बड़ा सा पुल बताया जा रहा है जो की एक बड़ी सी नदी के ऊपर बना हुआ है पुल के अंदर बहोत सी रेलिंग और जालिया लगी हुई है तथा पुल के अंदर --

ये इमेज में हमे एक बड़ी सी बिल्डिंग के साइड में छोटा सा प्रवेश द्वार बनाया दिख रहा है जो की लाल कलर का है तथा बिल्डिंग का कलर ग्रे कलर का है और प्रवेश द्वार लाल कलर का है उसके सामने सड़क दिख रही है जो की ग्रे कलर की है।

ये इमेज में हमें एक बनता हुआ घर नजर आ रहा है जिसके ऊपर अभी --

और वहाँ पे घर और मकान बने दिख रहे हैं जो की बहोत ऊँचे ऊँचे दिख रहे हैं उस पे हमें टीन भी दिखाई दे रहा है।

पहाड़ नजर आ रहे हैं वहाँ पहाड़ बहोत तथा बहोत दूर दूर तक फैले हुए हैं।

ये इमेज मे हमें एक स्कूल के बिल्डिंग के अंदर से फोटू खिच्चीं दिख रही है जिसके अंदर हमे एक नीचे बोहोत सारे टाइल्से लगाई दिख रही है।

यह इमेज मे हमें एक टावर दिख रहा है तथा उसका कलर हमे बहोत रंग बिरंगा दिख रहा है और टाइम टावर है तथा उसपे एक घड़ी लगी हुई है।

यह इमेज मे हमे एक बड़ा सा मकान दिख रहा है जोकि सफेद और नीले रंग से रंगा गया है थता वहां पे हमे बहौत लंबी लंबी --

यह इमेज में हमे एक कॉलेज बना दिख रहा है जोकि सफेद कलर की बिल्डिंग में बना हुआ है वहा पे हमे बहोत बड़े अलग अलग तरह के कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।